और उसके पास में ये हम दूसरे दादर पर एक दुकान भी देख सकते हैं।

यह एक मछली की दुकान नजर आ रही है जहाँ पे एक महिला मछली बेचती हुई नजर आ रही है।

यह एक बड़ा खेल का मैदान नजर आ रहा है जहाँ पे एक खिलाडी --

पुरुष जो की धोती पहनी हुई है।

बैनर पर महिन्द्रा लिखा गया है उसके पास में ये और एक हम देख सकते हैं जिसमें हौंडा --

ग्लास के ऊपर सेल कर के अंग्रेजी में लिखा गया है और बाहर एक मोटर साइकिल भी दिखाई दे रही है।

और सीढ़ी भी नजर आ रही है जो कि ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है पत्थरों से बनी हुई।

भाजी और तोलने का रखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके सामने हम और एक दुकान देख सकते है।

दोने ट्रे के अंदर एपल्स रखे हुए दिखाई दे रहे है उन एपल्स के ऊपर हम देख सकते है स्टीकर लगे हुए भी नजर आ रहे है।